बिल्डिंग के बाहर बाइक लगी हुई है और बिल्डिंग देखने में काफी खूबसूरत लगती है ये लगभग जिला कार्यालय है।

पीछे दीवार के तरह रोलदार बनाया गया है और यहां व्हाइट व्हाइट लगाई गई है।